दो तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

रंग बिरंगे गुब्बारे से सजाया गया है।

इस दुकान में बहोत सारी किताब रखे हुए है।

चार बच्चे बैठे हैं चार खड़े हैं।

यह एक मंदिर की फोटो है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में दो घर दिखाई दे रहा है।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहाँ पे लाइन से गाड़ी लगी हुई है।

इस फोटो में राधे कृष्ण की--

जो कि जयपुर हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

पानी के बीच में महल बना हुआ है।

यह एक स्विमिंग पूल का फोटो है।